उसमें से आगे वाले लड़के ने एक शर्ट पहना है पिंक कलर का और--

व्हाइट कलर है ब्लू कलर है ब्लैक कलर है रेड कलर काफी सारे गॉगल्स है।

और पीछे वाले जो खड़े है उनके गले में चारों के हार डाला हुआ है और सामने वाले के जो--

और एक रेड कलर की कार है रेड कलर की कार के पास में एक--